हिंगलाज बुक डिपो है स्टेशनरी टाइप का यहाँ पर तीन अंकल खड़े हुए हैं।

बहुत सारी लेडीज हैं जो कि छट पूजा मना रही हैं और नदी के अंदर हरी हरी गास हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियां रखी हुई हैं बहुत सारी मात्रा में हैं और यहां पर।

जैसे कि मैं यहां देख पा रहा हूं एक अंकल ड्रिल मशीन ले रखे हैं अपने हाथ में।

उनके पास एक साइड में लाल कलर की हथौड़ी भी रखी हुई है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं यह एक कॉफि स्टॉल नजर आ रही है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर सेटिंग लगी हुई है और सरिया भी बिछाया हुआ है।

और लेफ्ट साइड में एक पौधा रखा हुआ है छोटा सा।

एक्सिस बँक का ए.टी.एम नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड आंध्र बैंक का ए.टी.एम नजर आ रहा है और ऊपर छत --

यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो कि दुकानदार लग रहे हैं इन्होंने ऊपर साइड अपने कपड़े रखे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक कोई छोटा सा शहर टाइप का नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं यहां पर दो भैया खड़े हुए हैं एक भैया बैठे हैं।

यहां पर ये कार शायद वॉश होती है या इसपे कुछ काम होना बाकी है।

लिखा हुआ है इसके राइट साइड पे एक घड़ी टंगी हुई है और दो खिड़कियां नजर आ रही है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं यहां पर एक काफी बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में एक आंटी --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक ताल बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है और।

यहां पर सामने दीवाल में फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और ये एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है इसके।

यहां की बोर्ड पे जो भाषा लिखी है वो तमिल या साउथ साइड जैसी लग रही है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं ये एक जिम नजर आ रही है और यहां पर --

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं ये यह एक जंगल सा नजर आ रहा है इसमें काफी बड़े-बड़े --

पेड़ खड़े हुए हैं और सामने की तरफ काफी दूर जा के ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पे नदी या झील टाइप की काफी बड़ी है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं यह एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है जिसका आकार काफी बड़ा लग रहा है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हू यह मुझे एक चर्च नजर आ रही है जहां पर --

चर्च के ऊपर लोगो लगा हुआ है चर्च वाला।